और पीछे हाथी के ऊपर एक व्यक्ति पानी मार रहा है और पीछे कुछ महिला कुछ पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

और ई होटल के बाहर एक ग्राउंड है।

इस कार वर्कशॉप के अंदर फिटिंग हुई है उसमें कुछ सामान रखा है।

और एक काउंटर रखा है जिस पर मोबाइल और रिमोट रखा हुआ है।

और इस जनसेवा केंद्र में कुछ मशीन फोटोस्टेट की काउंटर पर लैपटॉप रखा हुआ है।

और ब्लैक और पीले कलर की जिम की मशीन रखी हुई है।

और यहां पर एक व्यक्ति जिम करता नजर आ रहा है।

और नीचे की ओर मैट भी बिछी है जो रेड कलर की है।